ये एक रेस्टोरेंट है सामने कुर्सियां और टेबल लगा है और इसके--

बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं सामने पानी भी बेह रहा हैं।

यहां कुछ पेड़ लगे हुए हैं उन पर हरे भरे पत्ते भी दिख रहे हैं।

और भी चीजे रखी हुई है बकेट --

बड़ी बड़ी प्लेट सी लगी हुई हैं।

ये एक हॉस्पिटल है यहां कुर्सी मेज रखा है।

बिजली की तारे और अंधेरी दिख--

टेबल पर कुछ डब्बे भी रखे हैं।

एक मरीज को लेटाने वाली चेयर है।

सामने पंजाब में आसपास स्वागत लिखा हुआ हैं पेट्रोल पंप पर एक ऑटो भी दिख रहा--